पंखा लगा हुआ है। पंखे में डिजाईन है पंखा चोकोलेटी है।

ए घर है। दो भैस बंधी हुई है रस्सी से ये भैस हैं छोटी सी छोटी सी पड़ी है इसकी पूंछ है पूंछ कटी हुई है खून निकल रहा है ये धरती है धरती पे --

राजीव इंटर कालीज बदायूँ का है। ये ठेला लगा हुआ है ठेले पे म्मम्म बतासे हैं। ये आदमी खड़ा हुआ है टिक्की है।